एक यहाँ पे लड़का खड़ा है उसकी ग्रीन पेंट है और स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है उसी के साइड मे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका रेड शर्ट है वो उसको कुछ दे रहा है और यहाँ पर फ्लावर्स टंगे हुए है बहुत सारे फूल पत्ते टंगे हुए है।

ये मंडी है ये जो एक अंकल आये है मंडी मे सामान लेने टमाटर भी रखे है यहाँ पे गोभी भी रखा है मिर्ची भी रखे है और मटर भी रखे है और पता गोभी भी रखा इधर और टमाटर रखे है।

यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं ये राशन की शॉप हैं यहाँ बहार एक ए-पेप्सी की भी बोतल लगी हुई है बिसलेरी वगेरा पानी के पाउच वगेरा की जो भी चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा।

ये एक लक्ष्मी जनरल स्टोर है ये बा-बा-बाबुन भाई का और राहुल भाई का मिहिजाम रोड जम जामताड़ा पर यहां बच्चों के हर टाइप के वगेरा राशन की शॉप है।

जिम है इधर एक लाइट लगी हुई है और जिम बॉडी बनाने का जिम है यहाँ पर आपको वेट कम करने को मिलता है यहाँ पे मार्बल लगे हुए हैं ।।